इ जिम बा जिम के बगल में दम्पल - उमपल रखल बा।

इहाँ हरिया रंग के घास लौकता बगल में शादी के सजावट लौकता।

ई एक विवाह भवन ह ई शादी की सजावट कितना सुंदर बा एक फोटो में लड़का-लड़की बा जिनका शादी होता।

इ पार्क ह इ पार्क में हरियर-हरियर रंग के गाछ-बृक्ष हे बइठे में बड़ी आनंद मिलेला।

झुलुआ बा छोटे-छोटा बच्चा ला यह आपन बच्चा के लाइ लगन एमें झूलाइ झुलुआ |